तीज है। ये पर्स में पैसा रखी है।

एकदम हरा-भरा है घास भूसा है ये जगह पे इसलिए सब कोई आके यहाँ पे --

यहाँ पे इस गेट को बनाने में बहुत ही पैशा लगा होगा। ये गेट देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही सुन्दर है भी ये।

यहाँ पे बैठने का जगह है यहाँ पे सोफा है।

यहाँ पे दो बच्ची ऐसे मोमबत्ती ले के खड़ी है बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में ये एक दम उजाला कर दे रहा है। ये बच्ची लोग भी बहुत खूबसूरत है।

पीला कलर का है सो बहुत जच रहा है इस घर में जो यहाँ पे पेड़ लगा दिया है पेड़ और अच्छा लग रहा है देखने में।

और इसका जो सीढ़ी है यहाँ पे वो सीढ़ी भी तो बहुत बढ़िया लग रहा है और सूंदर से बनाया --

पे बहुत ही सारी मछली रखा गया है ये मछली खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और अच्छा लगता है।